स्टेट बैंक का लोक सेवा यहां पर एक प्लैटिनम ।

एक कार खड़ी है रेड कलर की एक बाइक है रेड एंड ब्लैक में ।

यहां कॉरिडोर है यहां पर तो लकड़ी की अलमारियां लगी हुई है।

और भी बहुत सारी एंटीक रखी हुई है फोटोज़ लगी हुई है।

यहां एक थिएटर है जहां पर मूवी दिखाई जाती है।

यहां पे बहुत सारे खाने के आइटम है एक लेडी खड़ी है जिसने ऑरेंज कलर का सूट पहना है।

यह फिशेज है इन्हे इलेक्ट्रिक फिश भी कहा जाता है यह ।

पीछे बॉटल्स रखी हुई हैं सी_सी_टी_वी --

यहां एक बाहर रोड है यहां पे एक कार खड़ी हुई है।

पीछे दो बिल्डिंग है वहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ पर फूल लगे हुए हैं।